तथा बोहोत सारे टूल्स भी नजर आ रहे है। एक्सरसाइज के।

'' स्टील की तथा बहुत सारी मशीन भी और एकिपमेंट भी नजर आ रहे है। ''

व्यायाम करने की मशीनें रखी हुई है और हरे रंग की चटाई बिछाई गई है।